और ये आदमियाँ सब ऊपर में अच्छा से साफ कर रहे हैं |

ओदिएन्ट ऑफ़ बैंकिंग लिखा हुआ है और नीचे में बाइक्स लगी हुई है साइड्स में बस के हैं।

और कपड़ा के नीचे चप्पल सब दिख रही है।